यहाँ सभी के अलग-अलग केबिन दिए गए हैं सभी लोग अपने-अपने केबिन में बैठ के काम कर रहे हैं बहुत सारे कागज --

आते हैं ग बहुत सारी गाड़ियां इस रोड में चलती है।

यह एक वैभव पैलेस है यहाँ एक सम्पूर्ण उत्सव स्थल है यह कटहरी बाग में है।